एक चित्र में हमको एक अ बड़ी सी फंक्शन हॉल की तैयारियां हो गई हैं यहाँ पे लोग आने की इंतजार आने की इंतजार कर रहे है और फंक्शन को स्टार्ट करने में देरी हो गई है।

इस चित्र मे हमको एक बड़ी फंक्शन हॉल की तैयारियां चल रही है सारे गुब्बारे क्यों फेल रहे है यहाँ पर लोग एन्जॉय कर रहे हैं।